अ अमूल दूध डेरी एम जनरलस्टॊर की केक पड़ल है सामने की तरफ को वाला दिख रही है काउंटर दिख रहा हैं |

चेयर दिख रही है ब्लैक कलर की घड़ी दिख रही है लाइटे दिख रही है सामने की तरफ और--

और बहुत से बाइके दिख रही है टू व्हीलर्स एक पेड़ दिख रहा है यहाँ पे--

सामने यहाँ पर एक रोड दिख रहा है बड़ा सा और बिजली का खंम्भा दिख रहा है खंभे की तरफ ऊपर --